एक शेल्फ नज़र आ रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

में कुछ बाइक नजर आ रहा है।

दिखाए गए बिल्डिंग का रंग सफेद है।

बहुत सारे वाहन दिखाई दे रहा हैं।

जमीन हरी घास से ढकी हुई है।

यह दृश्य एक दोपहर का दृश्य है।

ऊपर बहुत सारे फैन नजर आ रहा है ।

करेंट का तार नजर आ रहा है।

सामने एक काला सोफा नजर आ रहा है।

तस्वीर में बहोत सारे टेबल नजर आ रहा है।

दृश्य में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

दूर कुछ करेंट का तारे दिखाई दे रहा है।

दृश्य में दिखाए गए सड़क के ऊपर कुछ कार्य रखी गई है।

दूर बहोत सारे दुकानें दिखाई दे रहा है।

किनारे बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहा हैं।

तस्वीर में एक आदमी है।

कमरे के बीच में टेबल नजर आ रहा है।

फर्श की दीवारों में कई तस्वीरें दिखाई दे रहा है।

मालाएं लटके हुए दिखाई दे रहा है।

दिखाई गए साइन बोर्ड में एक फोन नंबर लिखा हुआ है।

चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रहा है।

सरक के साइड में सफेद रंग का रेखाएं नजर आ रहा है।

दिखाए गए दृश्य में एक काले रंग का गेट नजर आ रहा है। ।

दृश्य में तीन लोग नजर आ रहा है।

दृश्य में बहोत सारे गुब्बारे नज़र आ रहा है।

तस्वीर में विभिन्न रंग के फ्लैग दिखाई दे रहा हैं।

यह बिल्डिंग बहोत सारे पेड़ पौधे से भरा है।

तस्वीर में बहुत सारे लोग नजर आ रहा है।